के साथ ही इसमें एक बहुत बड़ी ही एक दिखाई दे रही है इसके ऊपर एक बहुत --

कुछ काले रंग की गाड़ियां उधर जा रही है।

एक मोबाइल दिखाई दे रही है इसके साथ ही इसमें कोई --

इस फोटो एक बहुत बड़ी बांध दिखाई दे रही--

इस फोटो में एक मेज दिखाई दे रही है।

मेज के सामने से एक बच्चा जा रहा है जिसने अपने सिर के ऊपर कुछ--

गेट के ऊपर जिया गार्डन लिखा हुआ है जो--

इस फोटो में ये गाड़ी दिखाई दे रही है।

उसके साथ ही उसमें ये एक बहुत ही बड़ा सा एक--

दिखाई दे रहा है उसके ऊपर से एक बिल्डिंग का--